बाहर कांच से लगा हुआ एक स्थान है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम मां भगवती रेस्टोरेंट है।

साइड में एक ड्रॉअर जैसा बना हुआ है जिसके ऊपर गुलदस्ता रखा गया है।

इस चित्र में एक बच्चा एक स्टेरिंग पकड़ा हुआ है।

इस चित्र में ढलाई हो रही है जिसके लिए काफी पटरे लगाए गए हैं।

बाजू मे एक जग है। ऊपर मे कई तरह के शैंपू लटकाए गए हैं।

यह माहौल बहुत हरा भरा है।

नीचे में काफी झाड़ लगे हुए हैं।

यहां दो आदमी खड़े हैं साइड में बहोत सारे टाइल्स के पाठ रखे हुए हैं।

इस चित्र में दो टेबल है और प्रत्येक टेबल के पास चार कुर्सी रखी हुई है।

यहां काउंटर के पास एक कुर्सी रखी हुई है।

यह एक खुला मैदान है जहां दो झोपड़ी लगी हुई है।